यहां पे कुछ फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं जिनपे बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है।

ईंटो का घर बना हुआ है आसपास पेड़ पौधे हैं।

यहां पे एक मार्केट है जहां पे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

अलमारी कांच की है। पास में एक और दुकान है। दुकान के अन्दर बल्ब जल रहा है।

यहां पे एक माल है जहां पे बहुत सारी कुर्तियां टंगी हुई हैं।

यहां पे कुछ आदमी खड़े हैं जो जेब में हाथ डाले हुए हैं।

जो पीले रंग की दिखाई दे रही है और कुर्सियों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।